कुरकुरे के पैकेट शैम्पू पैकेट है और भी है |

यहाँ लिखा हुआ है मुथुर डेर मुथुर डेरी और यह गेट है और यहाँ पे बहुत सारा सुन्दर गाड़ी लगा हुआ है और यह बहुत चारों एकरो में फैला हुआ।

पैकेट कुछ रखा हुआ है बहुत सुंदर है।

यहाँ देख सकते हैं बहुत सुंदर चित्र बनाया है महात्मा गांधी जी की पुतला जैसा दिखाया बना हुआ।

लगा हुआ है यहाँ एक दूसरे के साथ बहुत सारे पिक दीवार पे चिपकाए काफी लोगो के पिक दीवार पे चिपकाए हुए हैं।